रूबी में फोर और ईच लूप्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शब्द लूप का मतलब रूबी में भिन्न प्रकार के लूप्स फोर लूप के उपयोग और ईच लूपिंग कन्स्ट्रक्ट के उपयोग यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु वर्जन 1204 रूबी 193 इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपके पास इंटनेट कनैक्शन होना ज़रूरी है
आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब मैं समझाती हूँ कि रूबी में लूप की तरह क्या उल्लिखित है
लूप कमांड या कमांड्स का सेट है जो निश्चित बार निष्पादित होता है
रूबी निम्नलिखित मुख्य स्टेटमेंट रखता है फोर ईच 000049 000048 व्हाइल उंटिल इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फोर और ईच लूपिंग कन्स्ट्रक्ट को कैसे उपयोग करें
शुरू करने से पहले कृपया अपनी होम डायरेक्टरी में निम्न फ़ोल्डर्स बनायें
तत् रूबी हाइफेन ट्यूटोरियल लूपिंग हाइफेन स्टेटमेंट कृपया सब फ़ोल्डर्स बनायें जैसा वहां उल्लिखित है
अब हमने आवश्यक फ़ोल्डर्स बना लिए हैं
आगे बढ़ते हैं
रूबी में फोर लूप का रचनाक्रम दिए गए के जैसा है
फोर वेरिएबल इन आ कलेक्शन ओएफ ऑब्जेक्ट्स रूबी कोड इंड इसको एक उदहारण से सीखते हैं
गेडिट में एक नयी फाइल बनाते हैं जैसे प्रारंभिक स्तर के रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित हैं
और इसको फोर हाइफेन लूप डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास पहले से ही फोर लूप का कार्यकारी उदाहरण है
इस उदाहरण को पूरा करने के लिए आप कोड टाइप कर सकते हैं
इस उदाहरण में मैंने एक फोर लूप घोषित किया है
हमारे पास 1 से 20 तक नंबर्स का सेट है
हम फोर लूप में एक वेरिएबल आई घोषित करते हैं
1 से 20 तक नंबर्स के सेट में आई को पहले एलिमेंट से प्रारम्भित किया जाता है
फोर लूप की घोषणा के कारण यह कोड 1 से 20 तक प्रत्येक नंबर पर दोहराया जाता है
फोर लूप में घोषित पट्स मेथड आउटपुट के लिए जिम्मेदार है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें
रूबी स्पेस फोर हाइफेन लूप डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आउटपुट 1 से 20 के नंबर्स का अराय होगा
इस उदाहरण में हमने इंक्लूसिव रेंज के लिए फोर लूप घोषित किया
इसमें 1 से 20 तक के नंबर्स सम्मिलित हैं
आगे हम नॉन इंक्लूसिव रेंज के लिए फोर लूप का कार्यान्वयन देखेंगे
कोड का अगला भाग टाइप करना जारी रखें
नॉन इंक्लूसिव का मतलब यह ऑब्जेक्ट्स के समूह में अंतिम एलिमेंट सम्मिलित नहीं करेगा
यहाँ फोर लूप 1 से 20 तक की नॉन इंक्लूसिव रेंज के लिए कार्यान्वित हुआ है
आप शीघ्र ही देखेंगे कि नंबर 20 आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा
अंतिम अंक सम्मिलित नहीं हुआ है जब आपके पास नंबर्स के बीच में तीन डॉट्स हैं
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस फोर हाइफेन लूप डॉट आरबी
और आउटपुट देखें
आउटपुट अभी भी नंबर्स का अराय होगा लेकिन नंबर 20 सम्मिलित नहीं होगा
अब आप अपना फोर लूप लिखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने चाहिए
रूबी में ईच लूप का रचनाक्रम निम्न प्रकार है आ कलेक्शन ओएफ ऑब्जेक्ट्स डॉट ईच डीओ इतेम
रूबी कोड इंड इसको एक उदाहरण से समझाते हैं
गेडिट में एक नयी फाइल बनायें जैसे कि रूबी के प्रारंभिक ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
और इसको नाम दें ईच हाइफेन लूप डॉट आरबी मेरे पास ईच लूप का एक कार्यकारी उदाहरण है
इस उदाहरण को समझते समय आप कोड भी टाइप कर सकते हैं
मैंने इस उदाहरण में एक ईच लूप घोषित किया है
हमारे पास 1 से 20 तक नंबर्स का सेट है
ईच लूप में हम एक वेरिएबल आई घोषित करते हैं
1 से 20 तक नंबर्स के सेट में आई को पहले एलिमेंट से प्रारम्भित किया जाता है
ईच लूप की घोषणा के कारण यह कोड 1 से 20 तक प्रत्येक नंबर पर दोहराया जाता है
ईच में पट्स मेथड घोषित किया है जो आउटपुट के लिए जिम्मेदार है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस ईच हाइफेन लूप डॉट आरबी
और आउटपुट देखें
आउटपुट 1 से 20 के नंबर्स का अराय होगा
उपरोक्त उदाहरण में हमने इंक्लूसिव रेंज के लिए एक ईच लूप घोषित किया है
इसमें 1 से 20 तक सारे नंबर्स सम्मिलित हैं
आगे हम नॉन इंक्लूसिव रेंज के लिए ईच लूप का कार्यान्वयन देखेंगे
कोड के इस भाग को टाइप करना जारी रखें
नॉन इंक्लूसिव का मतलब यह ऑब्जेक्ट्स के संग्रह में अंतिम एलिमेंट को सम्मिलित नहीं करेगा
यहाँ ईच लूप नंबर्स 1 से 20 तक की नॉन इंक्लूसिव रेंज के लिए कार्यान्वित हुआ है
शीघ्र ही आप देखेंगे कि नंबर 20 आउटपुट में प्रदर्शित नहीं होगा
जब नंबर्स के बीच 3 डॉट्स होते हैं तो अंतिम डिजिट सम्मिलित नहीं होती है
अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस ईच हाइफेन लूप डॉट आरबी
और आउटपुट देखें
अब आप पर्याप्त रूप से अपना ईच लूप लिखने में सक्षम होने चाहिए
हम कैसे निर्धारित करें कि कौनसा लूपिंग कन्स्ट्रक्ट चुनना है160
फोर लूप कन्स्ट्रक्ट को फिर से कॉल करते हैं
पहले उदाहरण में फोर उपयोग करके हम 1 से 20 तक नंबर्स के सेट को दोहराते हैं
अपने टर्मिनल में रूबी स्पेस फोर हाइफेन लूप डॉट आरबी को निष्पादित करें आउटपुट देखें
अब गेडिट में कोड देखते हैं
जब आप फोर लूप का उपयोग करते हैं तो रूबी पीछे से ईच मेथड को कॉल करता है
और समान आउटपुट के लिए ईच या फोर किसी को कॉल करें चूँकि फोर भी ईच को कॉल करता है अतः इसके बजाये ईच लूप का उपयोग करना बेहतर है
यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लता है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फोर लूप का उपयोग ईच कन्स्ट्रक्ट का उपयोग फोर के बजाये ईच उपयोग करने का कारण उपरोक्त लूपिंग कन्स्ट्रक्ट उपयोग करने के उदाहरण एक नियत कार्य की तरह उचित लूप कन्स्ट्रक्ट उपयोग करके एक रूबी प्रोग्राम लिखें
1 से 20 तक नंबर्स के सेट से इवन नंबर्स का आउटपुट बनायें
निम्न लिंक पर उपलबध वीडियो देखें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
अच्छी बैंडविड्थ न होने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद